नमस्कार !
euler methods उपयोग करके odes को हल करने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत तक आप सीखेंगे कि:
scilab में euler और modified euler methods प्रयोग करके odes को कैसे हल करते हैं
odes को हल करने के लिए scilab कोड कैसे बनाते हैं
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
उबन्टु 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम
और scilab 533 वर्शन
इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपको scilab की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि odes को कैसे हल करते हैं
scilab सीखने के लिए कृपया स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध सम्बंधित ट्यूटोरियल्स को देखें
euler method में हमें ode के हल का अनुमान मिलता है
यह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को हल करने में उपयोग होता है जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन यानि अवकल समीकरण की इनिशियल वैल्यूज़ दी होती हैं
यह सतत फंक्शन्स को हल करने में उपयोग किया जा सकता है
अब euler मेथड प्रयोग करके एक उदाहरण को हल करते हैं
हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी गयी हैं
y डैश इज़ इक्वल टू माइनस 2 t माइनस y
y की इनिशियल वैल्यू माइनस 1 1 दी गयी है
और स्टेप लेंथ 01 दी हुई है
हमें टाइम t इक्वल टू 05 पर y की वैल्यू ज्ञात करनी है
अब euler method के लिए कोड देखते हैं
scilab एडिटर पर euler अंडरस्कोर o d e डॉट sci खोलें
हम आर्ग्युमेंट्स f t init y init h और n के साथ euler अंडरस्कोर o d e फंक्शन को परिभाषित करते हैं
जहाँ: f हल किया जाने वाला फंक्शन है
t init टाइम t की इनिशियल वैल्यू है
y init y की इनिशियल वैल्यू है
h स्टेप लेंथ है और n इटरेशन्स की संख्या है
फिर हम t और y की वैल्यूज़ को ज़ीरोज़ के वेक्टर्स पर इनिशिअलाइज़ करते हैं
हम t और y की इनिशियल वैल्यूज़ को क्रमशः t of one और y of one में रखते हैं
फिर हम y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 1 से n तक इटरेट करते हैं
यहाँ हम y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए euler मेथड लागू करते हैं
अंततः फंक्शन को समाप्त करते हैं
euler अंडरस्कोर o d e डॉट sci फाइल को सेव और एक्सिक्यूट करते हैं
उदाहरण को हल करने के लिए scilab कंसोल को खोलते हैं
हम निम्न टाइप करके फंक्शन को परिभाषित करते हैं
d e f f ब्रैकेट खोलें सिंगल कोट में स्क्वायर ब्रैकेट खोलें y डॉट स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें इक्वल टू f of t कॉमा y सिंगल कोट बंद करें कॉमा सिंगल कोट खोलें y डॉट इक्वल टू ब्रैकेट खोलें माइनस 2 asterisk t ब्रैकेट बंद करें माइनस y सिंगल कोट बंद करें ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
फिर टाइप करें: t init = 0
enter दबाएं
टाइप करें: y init = माइनस 1
enter दबाएं
टाइप करें: स्टेप लेंथ h = 01
enter दबाएं
स्टेप लेंथ 01 है और हमें 05 पर y की वैल्यू ज्ञात करनी है
अतः इटरेशन्स की संख्या 5 होनी चाहिए
प्रत्येक इटरेशन पर t की वैल्यू 01 से बढ़ाई जाएगी
अतः टाइप करें कैपिटल n इज़ इक्वल टू 5 n=5
और enter दबाएं
फंक्शन को कॉल करने के लिए टाइप करें:
स्क्वायर ब्रैकेट खोलें t कॉमा y स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें इक्वल टू euler अंडरस्कोर o d e ब्रैकेट खोलें f कॉमा t init कॉमा y init कॉमा h कॉमा कैपिटल n ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
t = 05 पर y की वैल्यू दिखती है
अब modified euler method को देखते हैं
यह सेकंड आर्डर मेथड और स्टेबल टू स्टेप मेथड है
हम टाइम स्टेप के अंत में और शुरुआत में फंक्शन का एवरेज ज्ञात करते हैं
अब modified euler method प्रयोग करके इस उदाहरण को हल करते हैं
हमें एक फंक्शन y डैश इज़ इक्वल टू t + y + ty दिया गया है
y की इनिशियल वैल्यू 1 है
और स्टेप लेंथ 0 01 है
हमें modified eulers method प्रयोग करके टाइम t = 01 पर y की वैल्यू ज्ञात करनी है
अब scilab एडिटर पर modified euler method के लिए कोड टाइप देखते हैं
हम आर्ग्युमेंट्स f t init y init h और n के साथ फंक्शन को परिभाषित करते हैं
जहाँ: f हल किया जाने वाला फंक्शन है
t init इनिशियल टाइम वैल्यू है
y init y की इनिशियल वैल्यू है
h स्टेप लेंथ है और
n इटरेशन्स की संख्या है
फिर हम y और t के लिए एरेज़ को इनिशिअलाइज़ करते हैं
हम t और y की इनिशियल वैल्यूज़ को क्रमशः t of one और y of one में रखते हैं
यहाँ हम modified euler method कार्यान्वित करते हैं
यहाँ हम टाइम स्टेप की शुरुआत और अंत में y की एवरेज वैल्यू ज्ञात करते हैं
modi euler अंडरस्कोर o d e डॉट sci फाइल को सेव और एक्सिक्यूट करते हैं
scilab कंसोल खोलें
c l c टाइप करके स्क्रीन को क्लियर करें
enter दबाएं
निम्न टाइप करके फंक्शन को परिभाषित करें d e f f ब्रैकेट खोलें सिंगल कोट खोलें स्क्वायर ब्रैकेट खोलें y डॉट स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें इक्वल टू f of t कॉमा y सिंगल कोट बंद करें कॉमा सिंगल कोट खोलें y डॉट इक्वल टू t प्लस y प्लस t asterisk y सिंगल कोट बंद करें ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
फिर टाइप करें: t init इक्वल टू ज़ीरो एंटर दबाएं
टाइप करें: y init इक्वल टू 1 और एंटर दबाएं
फिर टाइप करें: h इक्वल टू 001 एंटर दबाएं
टाइप करें: कैपिटल n इक्वल टू 10
चूँकि 001 की स्टेप लेंथ के साथ टाइम t=01 पर इटरेशन्स की संख्या 10 होनी चाहिए
enter दबाएं
फिर निम्न टाइप करके modi euler underscore o d e फंक्शन को कॉल करते हैं:
स्क्वायर ब्रैकेट खोलें t कॉमा y स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें इक्वल टू modi euler अंडरस्कोर o d e ब्रैकेट खोलें f कॉमा t init कॉमा y init कॉमा h कॉमा कैपिटल n ब्रैकेट बंद करें
enter दबाएं
t = 01 पर y की वैल्यू दिखती है
अब इस tutorial को सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने euler और modified euler methods के लिए scilab कोड बनाना सीखा
हमने scilab में इन मेथड्स को प्रयोग करके odes हल करना भी सीखा
नीचे दर्शाये link पर उपलब्ध video देखें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
इस mission पर अधिक जानकारी नीचे दर्शाये link पर उपलब्ध है
आय आय टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद